और यहाँ पर मछली बेचती है दो ठो लेडिस एक ठो आदमी के देती है और एक ठो लेडीज हाथ दे के बैठा हुआ है। उधर गाड़ी पर लादी है मशीन भी है।

जैसे ये कूलर भी लगा हुआ है। बहुत सारा तार भी है यहाँ पर बहुत जीन्स है यहाँ।

बहोत बड़ा है बहोत म बहोत बड़ा मेला लगा हुआ है। --